ये काफी कलरफुल भी लग रहा --

और पूरी गली में सन्नाटा है।

नदी के किनारे कुछ लोग खड़े हैं।

और चित्र में इमारत का जो फ्रंट पार्ट है --

जो कि अभी नया-नया बना है।

ठंढे पानी की मशीन लगी हुई है।

और जिसके ऊपर इसाइयों के क्रॉस का निशान है।

सड़क के पास पहाड़ी भी है।

जो कि स्टेशनरी की दुकान है।

जहां पे पार्लर को बलूंस के साथ सजाया गया है।

और मैदान में कुछ पेड़ लगे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हैं।

पिच्चर में बोहत बड़ा मैदान है।

यहाँ पे कुछ आदमी किताबें लेने के लिये खड़े है।